ये कहीं डांस कॉम्पीटिशन का है।

गमछा मु माथा में बाने हुए हाफ टी-शर्ट और लुंगी पहने हुए है जो पानी में दोनों ही हैं।